ये आप मै अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ चाय पीने। इन लोग का चाय का प्राइस भी कम है। अ सब लोग यहाँ जा के पी सकते हैं। ये लोग बहोत ही अच्छा चाय बनाते हैं। सब लोगो को जाना चहिये यहाँ पे ।

ई सब का जानकारी आप को मिल जायेगा यहाँ पे आप जाके उन लोग से मिल के अपना बिज़नस स्टार्ट करने के लिए भी मदद मांग सकते है और आप लोगो को ये पूरा सब कुछ सही से बता देंगे ये लोग --

जहाँ पे घरेलू सामाने मिल जाएंगे और कुछ मांसाहारी सामाने भी मिल जायेंगे जैसे कि अंडे हुए।

यहाँ पे आई.आई.टी. जे.ई. मैंन्स एंड एडवांस की त्यारी कराई जाती है। यहाँ पर बच्चे एलेवेन टवेलवथ से ही तैयारी कर सकते हैं।

बैंक्वेट हॉल है। ये यहाँ पे लोग आते हैं ताकि विभिन्न प्रकार की चीजों का तैयारी कर सके।

जैसे बर्थडे का तैयारी कर सकते हैं आप यहां पे आप बर्थडे मना सकते हैं या फिर आप कोई कोई मीटिंग यहां पे कर सकते हैं आप या फिर कहीं वेडिंग सेरेमनी और मनी हो वह भी आप यहां पे कर सकते हैं।

अलग अलग पेड़ होते हैं। कुछ फलदाई पेड़ होते हैं तो कुछ उतना बोहोत ही जहरीले पेड़ होते हैं। यहाँ पे --